आप किसी सड़क के लग रहे हैं जिसके आस पास पेड़-पौधे--

यहाँ पे लगता है बोहोत ही गहरा पानी हो।

यह किसी गेट का लग रहा है जहाँ नया गेट लगाया जा रहा है जो --

अ नये नये सूट इत्यादि रखे गए हैं जहां एक मूर्ति के मूर्ति को--

और यहाँ दो गुलदस्ते साइड साइड से रखे हुए हैं।

इस स कप में चाय रखे गए है जो एक व्यक्ति अपने हाथ के ऊपर कप रखे --

यहाँ दो मिस्त्री हथोड़ी के साथ छत पे कुछ कर रहे हैं।

यह किसी बुक के दुकान का है जहाँ पेन्सिल पेन बुक विभिन्न प्रकार के बुक रखे गये हैं।